यहां पे एक लड़का चाय दे रहा है।

वह कुछ अपना प्रदर्शन कर रही हैं।

जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह मिट्टी का एक कोई--

जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक कटोरी में--

और कुछ तिरपाल लगा हुआ है जहां कुछ छोटे-छोटे पौधे भी दिख रहे हैं और एक स्कूटी खड़ी है और एक साइकल ।

यह एक बगीचा नाम का रिसॉर्ट है जहां पर छोटी छोटी--

जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे बहुत सारी मार्बल है।